यह एक डैम की तस्वीर है।

कुछ मूर्तियां भी खड़ी है।

यह एक बैंक की तस्वीर हैं।

यह एक गार्डन की तस्वीर है।

यहां बहुत सारे झूले भी हैं।

यह एक स्कूल की तस्वीर है।

इसका नाम यांत्रिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र है।

बाहर पोस्टर भी चिपके हुएं हैं।

पीछे कुछ सामान रखा हुआ है।

येह शॉप्स की पिक्चर है।

यह एक एयरपोर्ट की तस्वीर है।

येह एक शॉप की तस्वीर हैं।

यहां एक लाल ड्रम रखा हुआ है।

यह एक क्लास की तस्वीर है।

एक फास्ट फूड कैफे है।

यहां पर बहोत सारे लोग है।

यह एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है।